गईये खड़ी है एक बचा खड़ा हैएक आंटी खड़ी है और ब्लैक कलर कि गईया है ।

बहुत बड़ा बस स्टॉप बना हुआ है और दो बस खड़ी है और एक महेंद्र जीभ खड़ी हैं।

बहुत गंदा पानी भरा हुआ है गंगानगर टाइम लग रहा है एक लोग लाल कपड़े पहने हैं

बहुत बड़ी मल्टी बन रही है उसमें काम लगा हुआ है उसमें लकड़ी के वो लगे हुए हैं इसमें सेंट्रिंग लगी हुई है और साइड में--

एक वाइट और एक लगा हुआ है उपर खम्बे से और पेड़ दिख रहे हैं सामने--

एक बैनर लगा हुआ है व्हाइट कलर का ब्लैक सा पट्टा बना हुआ है रेड बना हुआ है ग्रीन से लिखा हुआ है और बिल्डिंग बनी हुई है।

बहुत जगह पड़ी है ह अनेक पारकर की पिलर बन रहे है माकन बहा हुआ है।

उस साइड बहुत तार उम-उम टावर का मिडिल तार खीचा हुआ है और साइड उम एक टावर खड़ा हुआ है वहा कुछ पानी भरा हुआ है।

यहा ह-ह-ह- डेम जैसा बना हुआ है एक ब्रिज भि दिख रहा है।

ह-ह- सफ़ेद कलर की यहा पे ह-ह- वाशिंग सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है।